बड़ा सा प्लेटफोर्म नजर आ रहा है। प्लेटफोर्म के दोनों प्लेटफोर्म के बीचो-बीच दो रेल पटरी बैठाया गया है। मम्म रेल पटरी के साइड के प्लेटफार्म में कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह रोड के बगल में एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है जोकि हरा और स्किन कलर का है। बिल्डिंग के ऊपर --

सामने बड़ा सा एक बिल्डिंग नज़र आ रहा है। बिल्डिंग के सामने की ओर पूरा शीशे का बना हुआ है। बिल्डिंग के ठीक बाहर बोहोत लोग खड़ा हुआ नज़र आ रहा है कुछ फोर व्हीलर एंड कुछ टू व्हीलर भी नज़र आ रहा है।

बिल्डिंग के नीचे फ्लोर में एक दरवाज़ा खुला हुआ है जिसके अंदर से एक खटिया बि-बिछा हुआ है।

एक बड़ी सी नदी बहती हुई नजर आ रही है। नदी का जल बोहोत ही साफ़ एवं स्वच्छ लग रहा है नदी के ऊपर एक स्टीमर भी नजर आ रहा है नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जोकि काफी बड़ी है।

एक नदी बहती हुई नजर आ रहा है जिसका जल बोहोत ही साफ़ एवं स्वच्छ है नदी के ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया है जोकि लोहे का है।

नदी के साइड में एक ब्रिज भी नजर आ रहा है। नदी का जल बहुत ही साफ है आसमान नीला एवं सफेद कलर के मेघ से पूरा ढका हुआ है।

सामने एक सा ग्राउंड नजर आ रहा है जोकि हरे-हरे घास से पूरा ढका हुआ है ग्राउंड के पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग है।